बिजली के खंभे और तार दिख रहे हैं नीचे में रेड कलर की बकट रखी हुई दिखाई दे रही है।

कुआँ बना हुआ है बीच मे एक मल्टी दिख रही है।

लकड़ी बिछी हुई दिखाई दे रहे हैं पेड़ लगे हुए हैं| व्हाइट कलर का पेन देख रहा है एक अंकल येलो कलर की टी-शर्ट पहने हुए ब्लू कलर की जींस पहने होय और ब्लैक और--

यहाँ पर ब्लैक कलर की टेबल है टेबल पे बहुत सारी फाइलें रखी हुई है जो की ब्लू कलर रेड कलर और व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है एक स्वे एक लैपटॉप रखा हुआ है एक व्यक्ति--